इस फोटू में हमें एक रिक्शा दिखाई दे रहा है।

बोहोत बड़ा घर दिख रहा है।

इसमें एक इकसार खान पता स्टेशन रोड बदायूं लिखा हुआ है।

जिसमें दो टीचर है व काफी सारे छोटे-छोटे बच्चे है।

इस इमेज में हमको घर दिखाई दे रहे हैं।

वह नदी के पीछे एक कच्चा घर दिखाई दे रहा है।

जिसमें बोहोत सारे हिरण हैं।

और ऊपर चार-पांच लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

वाह पहाड़ के अगल बगल बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें नीचे हरे कलर की घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

वह दीवार पर बैलून चिपके हुए है।

इस फ़ोटो में एक बड़ी सी कटिंग की दुकान खुली है।